इस फोटो के अंदर बहोत सारे मनी प्लांट दिख रहे हैं जो हर भरे बहोत सारे हैं।

मॉल दिखाई दे रहा है जिसमें अनेक प्रकार के कपड़े लटके हुए दिखाई दे रहे है और वो रंग बिरंगे भी है।

इस फोटो के अंदर एक जिम को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग जिम करते हुए नजर --

में पहाड़ से नीचे की तरफ दिखाया गया है जिसमें हरी हरी घास और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।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

दुकान को दिखाया गया है के अंदर अमरुद चीकू केला अनार सेब इत्यादि दिखाई दे रहे हैं।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

बनाने का काम चल रहा है जिसमें बहुत सारे लोग सिरमेंट चूना पत्थर इत्यादि लेकर --

पेड़ पौधों में पानी दे रहा है और उसके पीछे एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक गुफा को दिखाया गया है गुफा के नीचे एक व्यक्ति।

इस फोटो के अंदर एक मंदिर को दिखाया गया है जिसमें बहुत सारे लोग--

ब्लैक कलर का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।